मत पूछिए बहुत ज्यादा भयंकर है बहुत मस्त है इतना अच्छा है की मत पूछिए बहुत बढ़िया लग रहा है बहोत मस्त --

एक डैम ज्यादा तीता नहीं बनाया है स्वाद कम रहता हैबहुत अच्छा लगता है मछली खाने मे बहुत सुन्दर मछली है ये --

देखो ना कितना अच्छा लग रहा है मत पूछो बहुत भयानक --

बहुत बढ़िया लग रहा है देखने मे बहुत मस्त है इतना अच्छा लग रहा है मत पूछिए बहुत भयानक लग रहा है देख सकते है कितना सुंदर लग रहा है ।

देखिए कितना सुन्दर लग रहा है ये नजारा कितना मस्त लग रहा है ये कहा का सीन ये तो लग रहा है जंगल का सीन है देखने में बहुत सुन्दर लग रहा हैबहुत बढ़िया लग रहा है बहुत मस्त लग रहा है ।

और इधर पेड़-पौधा भी दिख रहा है इधर गाड़ी लग रखा है बहुत अच्छा गाड़ी लग रखा हैं बहुत सुन्दर लग रखा है चौराहा गया है एक यहाँ पे और बहुत अच्छा लग रहा है देखने में --

ये झुलवा झुल सकते है बच्चे लोग के लिए बहुत अच्छा सुविधा दिया गया है कितना सुन्दर सुविधा दिया गया है बहुत अच्छा लग रहा है देखने में बहुत सुन्दर --

ओ मय गॉड क्या फंक्शन बन रखा है देखिए क्या मजा है देखने मे कितना सुन्दर लग रहा है इधर से इधर देखिए ना यार कितना अच्छा लग रहा है ।